बस इस फोटो पर एक बड़ी सी बिल्डिंग है।

व्हाइट ब्लू ऑरेंज कलर के बैलून नजर आ रहे है।

और इसके नीचे एक ब्राउन कलर का बुक सेल्फ है।

दो इंसाने भी नजर आ रहे --

मुझे इस फोटो पर एक पुलिस स्टेशन भी नजर आ रही है।

फोटो पर मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

इस फोटो पर मुझे नदी दिखाई मिल रहा है।

कुछ लोग खड़े हुए हैं तो कुछ बैठे हुए है और कुछ लोग चल रहे है।